पीछे पीले रंग की काफी जीम की मशीनें दिखाई पर रही है वह एक लड़का अपनी तसवीर खींचते हुए नजर आ रहा है।

कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर आसमान का रंग साफ है वे धूप की किरने भी सड़क पर पड़ रही हैं।

यहाँ पे हर बच्चा अपने कलाकारी का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है वह उनके पीछे कुछ खिड़कियां लगी हुई नजर आ रही हैं।

वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का मेज़ भी रखा हुआ है जिसके ऊपर एक काले रंग का टेलीफोन भी पड़ा है।

यह चित्र एक जगह का नज़र आ रहा है जहाँ पर तीन लोग काम करते हुए नज़र आ रहे है।

ये चित्र एक दुकान की किताब का नजर आ रह है इस चित्र में तीन बच्चे वह एक महिला बैठी हुई है।

ये चित्र एक नदी का नजर आ रहा है | नदी के बीचो बीच एक रास्ता बना हुआ है जहाँ पर लोगों ने वाहन भी खड़े किये हुए हैं | कुछ लोग रास्ते पर नज़र आ रहे हैं।

ये चित्र एक शादी का नजर आ रहा है पीछे की ओर रंग-बिरंगी चुनरियां वे सफेद व लाल रंग के फुलो से सजावट की हुई है।

जहाँ पर पेन पेंसिल किताबें सब रखी हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर तीन व्यक्ति साथ में बातें करते नजर आ रहे हैं।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

यह चित्र एक सड़क का नजर आ रहा है जहाँ से एक इमारत का द्वार भी नजर आ रहा है जो लाल रंग का है। वह एक ऑटो रिक्सा भी जाते हुए नजर आ रहा है।

यह चित्र एक बहुत बड़े मैदान का नज़र आ रहा है जहां पर एक लड़का लाल कमीज पहने वह नीले टोपी लिए अपनी तस्वीर खींचते हुए नजर आ रहा है पीछे की और मिट्टी वा रेत के ढेर भी नजर आ रहे है।